यहाँ पर पूरा शहर और गाव सा दीखाई दे रहा है बहुत सारे जमीन पर पेड़ लगे हुए ह कुछ खेत डले हुए है सामने एक लड़का बैठा हुआ है।

यह मालाओ का बाजार है जिनमे मालाएं टंगी हुई है कुछ व्हाइट कलर की माला है जिनमे रेड कलर के फूल और पीले --

पियानो बजा रही है और आदमी एक मुरली बजा रहे है ढोलक बजा रहे है पीछे परदे टंगे है जिनका कलर क्रीम कलर का है एक मछली भी बनी हुई है पीछे ढोलक टंगी --

स्टेचू बना हुआ है हाथों का भी एक पुतला बना हुआ है सामने सरिये के जैसी दीवार बनी है कुछ लोग पीले कलर --

एक बोर्ड लगा है नीले कलर का जिसमे बंधन बैंक लिखा हुए है इंग्लिश मे भी बंधन बैंक लिखा हुआ है और तमिल भाषा मे भी बंधन बैंक लिखा हुआ है सामने से एक आदमी गुजर रहा है स्कूटी से।

सरिये बिछे हुई है एक आदमी हाथ मे सरिया लेके खड़ा हुआ है लोहे के सरिये दिखाइ दे रहे है सामने वाले घर का रंग गुलाबी है।